ये एक केनरा बैंक है जो कि इस बैंक में बहुत सारी सुविधाएँ हैं जैसे की ए.टी.एम. भी है और हम लोग इसमें ए.टी.एम. से बहुत फायदा मिलता है पैसा निकाल सकते हैं हर डे कभी बंद नही होता है।

ये एक बहुत ही अच्छा गुफा है जो कि इस गुफे में बहुत लोग घुमने के लिए आते है और बहुत अच्छा लगता है गुफे के अंदर घुमने में वहाँ बहुत अंधेरा रहता है बहुत लोग आते है घुमने के लिए बहुत भीड़ होता है ।

ये एक बहुत बड़ा स्कूल है जो कि इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल में पढ़ने में इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है।